यहाँ एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जो मिट्टी जमीन पर गड्डा खोद रहा है जो वृक्ष भी लगा रहा है।

और उसके सामने एक मकान भी बना हुआ है खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही है बिजलियाँ और सड़क में इतने वृक्ष भी लगे पहाड़ भी दिखाई दे रहा है लड़का हाथ में मिट्टि भी लिए हुए है।

--और पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है बहुत वृक्ष भी दिखाई दे रहे है और सड़क निकली हुई है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।